की-बोर्ड दिख रहा है।

हूं इसके अंदर हुं टेबल है। टेबल के अंदर पानी भी हुं पानी का बोतल रखा हुआ है।